है। रेलवे स्टेशन पर एक अंकल खड़े हुए दिखाई--

बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा--

बना हुआ है हॉल के अंदर वाइट कलर के सोपे रखें हुए--

दे रहा हैं जिसका एक गेट पर एक व्हाइट कलर से हरिहर क्षेत्र सोमनपुर मेला लिखा हुआ हैं।

यहां कालका माता की साक्षात एक बड़ी सी मूर्ति दिख रही है। यहां गणेश जी की--

ऑरेंज कलर का पेंट पुता हुआ दिख रहा है और एक बिल्डिंग पर व्हाईट एंड पिंक कलर का कलर पुता हुआ है।

काउंटर हॉल बने दिखाई दे रहे हैं काउंटर हॉल में फ्रॉक जींस ।

मुझे यहां पर एक पहाड़ी इलाका दिखाई--